ये एक मैकेनिक कि दुकान है जहाँ पर एक कुछ गाड़ी रिपेयर हो रही है कुछ लोग फिर घूम रहें हैं।

और इसमे पानी सा फैला हुआ है बगल से कुछ गंदगी सी दिख रही है।

और कुछ लोग बातें कर रहे है सामने पंखा और लाइटिंग लगी हुई है और टोपी लगाए हुए है कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं।

ये है और इसमे येल्लो कलर की दीवाल है पिंक कलर के पर्दे हैं और यहाँ पर कुछ डिसकसंन् हो रहा है।